और यहां पर बहुत दूर-दूर तक हरियाली दिख रही है।

यहां पे लोग वैटिंग वेटिंग कर रहे हैं वहां पे अंदर एक आदमी है।

और नीचे नीचे भी बहुत गड्ढे गड्ढा सा है और लाल लाल कुछ आग जैसा जल रहा है।

ये कोई शॉप है जहां पे बहुत सारी ये दवा की शॉप लग रही है और बहुत सारी दवाइयां रखी हुई हैं।

और पुराना सा टीन छत जैसा घर है।

और पीछे ग्रास ग्रास से आगे आगे पीछे छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं आसमान ब्लू कलर का दिख रहा है और लोग यहां से जा आ रहे हैं।

यह तो कोई अ शॉप है मतलब कि ढेर सारा शॉप जहां पे ढेरों सामान रखा रहता है यह प्लास्टिक तरह की रखी है।

यहां पे एक बच्ची खड़ी हुई है और स्टेज बना हुआ है एक मैडम है।

ये तो कोई मंदिर है मंदिर के पीछे एक बिल्डिंग भी बनी हुई है।

यहां पर पेंट शर्ट की लगे हुए हैं शोरूम के बाहर गेट पर--

ये पीछे पीछे घर बना हुआ है एक टीन का या पर्दे का शेड है खंबा लगा हुआ है।

और यहां लगता है कोई अभी आने वाला है।

ये तो नदी के किनारे का नदी या समुद्र है वो सारे लोग नहाने जा रहे हैं पूजा कर रहे हैं।

सामने बड़ी बड़ी सी नाव खड़ी है दूर पे छोटी-छोटी नाव है।

ये बहुत ही अच्छा सा एक कोई हॉल जैसा है बीच में कारपेट बिछा हुआ है रेड कलर का।

और उसके ऊपर एक टेबल रखा हुआ है शीशे का--

और एक पाइप जैसा बना हुआ है पीछे समु नदी में कुछ--

यह बहुत बड़ा सा रेत जैसा मैदान जैसा दिख रहा है।

लोग यहां पर अभी इधर से जाते हैं अभी यहां पे बहुत ही सन्नाटा दिख रहा है।

और उसके आगे एक गाड़ी और खड़ी हुई है।

और वो लोग कुछ कर रहे हैं कुछ बना रहे हैं।

ये एक पानी की पानी दिख रहा है जहां पर--

काले काले ब्लू ब्लू कलर के बादल हैं पीछे पेड़ है पीछे उसके घर जैसा दिख रहा है।

और नीचे बाउंड्री बनी हुई है।

पीछे उसके बाउंड्री बनी हुई है जहां पे--

और ये बहुत ही सन्नाटा है यहां पर।

यहां पर अह कोई एक बच्चा बैठा हुआ है स्टूल रखा हुआ है।

जहां पे लोग इसमें लिखा हुआ है ए वन एंड जी_बी --

और उसके आगे एक कोई खड़ा हुआ है बाहर रोड बनी हुई है।

इसमें बहुत बड़े से झूले लगे हुए हैं और बच्चे झूल झूल कर एंजॉय कर रहे हैं।

लाइन से वो गोल गोल घूम रहे हैं और उन लोगों को बहुत ही मजा आ रहा है।

यहां पे छोटे बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं।

तरह-तरह की वैरायटी वैरायटी के कपड़े यहां पर टंगे हुए हैं लोग यहां से अपने कपड़े बच्चों के लिए--

आसमान का कलर ब्लू कलर का है।

घोड़ा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है सुंदर सा है।

बहुत बड़ी सी दो जहाजें दिख रही हैं।

और साइड साइड में कबर्ड जैसा बना हुआ है वहां पे सारा--

और साइड में दो-तीन औरतें जा रही हैं सामान लेकर.

ये बहुत ही खूबसूरत सा घर बिल्डिंग नजर आ रही है।

और एक विंडो बनी हुई है शीशे की जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है।

पेड़-पौधे लगे हुए हैं आसमान का रंग बिल्कुल साफ है।

ये बाहर एक गेट लगा हुआ है गेट के अंदर एक बाइक बाइक खड़ी है बहोत बड़ा सा ग्राउंड है।